और उ ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

इसके बगल में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

उसके बाइक का कलर ब्लैक है।

यहां पे बहोत से रफ्तार से पानी आ रहे हैं।

पानी का कलर पीला है।

यहां पे एक लड़का बैठा हुआ है।

लड़के के माथे में घिआई कलर का रुमाल है।

एक सी_सी_टी_वी कैमरा है।

यहां पे लैपटॉप रखा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

यहां पे बहुत सारे कुरकुरे टंगे हुए हैं।

वहां बहुत सारे साड़ी रखे हुए हैं ।

बगल में एक लड़का सेल्फी ले रहा है।

उसके गेट का कलर ब्राउन है।

उसके बगल में एक खम्भा है खम्भा का कलर ब्लैक है।

एक येलो कलर का पैकेट है।

बहोत सारे पाइप है।

यह एक दुकान का दृश्य है ।

यह एक हॉल का दृश्य है।

एक कैन रखा हुआ है।

एक टेबल भी है टेबल का कलर ऑरेंज है।

के बगल मे एक और टेबल है टेबल का कलर ग्रीन है।

और बहुत बगल में चट्टान हैं।

जहाँ पे बहुत सारे टीन रखे हुए हैं।

वो लड़का जा रहा है।

यह सैलून का नाम ओसिस है।

गाड़ी में पीला कलर का कुछ लगा हुआ है।

उसके ऊपर के दीवार का कलर ऑरेंज है।

यह एक हनुमान मंदिर का दृश्य है।

हनुमान मंदिर में एक लड़का बैठा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

आदमी ने व्हाइट कलर का सर्ट और ब्लैक कलर का फुल पैंट पहना हुआ है।

यह एक हॉल का दृश्य है।

इसके दीवाल का कलर सफेद है।

यह एक बिल्डिंग है।

अलमारी का कलर ब्राउन है उसके बगल में एक गेट है।

एक माजा का पीला कलर का डब्बा रखा हुआ है।